सामने एक ड्रम है दूर पर पेड़ नजर आ रहे है काफी सारे घर नजर आ रहे है ।

सामने एक बड़ा सा समंदर है समन्दर के अन्दर एक बड़े से जहाज है जहाज दो कलर के है ।

मगर चार बाउल लगे हुए हैं एक किनारे टोकरी में काफी सारी मछलियां रखी हुई --

दो रोड है। सामने एक कमरे का मकान नजर आ रहा है। ऊपर कुछ लोग खड़े हुए हैं। सामने यहाँ पर बाइक नजर आ रही है।

यहाँ सामने काफी लड़के खड़े हुए हैं। लड़कों के सामने टेबल है। टेबल पर उनके बनाए हुए कागज के क्राफ्ट्स है।

यहाँ मैन गेट के पास किनारे काफी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है ।

सामने एक मैदान है मैदान में कही पे हरी-हरी घासे है और कही पे सुखा हुआ है। सामने एक लम्बी सी पाइप है। दूर पर एक--

चारो तरफ पेड़-पौधे लगे हुए है किनारे पर काफी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है दूर पर एक सफ़ेद बिल्डिंग नजर आ रही है ।